और ये कार में कोई खराबी होने के कारण इस कार को बनाया जा रहा है हम देख ही पा रहे है कि नीचे की ओर दो बड़े- बड़े टायर रखे गए हैं।

तो दोस्तों जैसा कि हम सब इस फोटो के अंदर देख ही पा रहै हैं ये एक रॉयल इनफ्राइंट जगह करके एक जगह है जहां पर हम देख--

टेक्निकल बोर्ड हैं जैसे कि ये मोटर द्वारा चलाई जाती है और उपयोगी भी होती है।

और साथ ही में ये लोग कुछ ए. टी. एम के से कुछ ज्यादा निकाल कर यहाँ से गुज़र रहै हैं।

जरूरत के अनुसार सारी चीज़ें ले सकते है जैसे कि पेन पेंसिल कंपास गम इत्यादि कई चीज़ें है जो कि इस दुकान में उपल्ब्ध है।

तो जैसा कि हम सब इस फोटो के अंदर देख ही पा रहे है इस फोटो के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक कोई छोटी सी जगह है और हम ये देख ही सकते है कि ये एक--

यहाँ पर अलग-अलग ऑटो है ये एक कोरबा करके कंपनी है जो कि ऑटो बनाती है हम देख पा रहै हैं कि यहाँ पर बहोत सारे ऑटो है जो कि आधे तैयार है और आधे--

तो जैसा कि हम सब देख ही पा रहे है इस फोटो के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे हमें एक जीप और एक--

तो जैसा कि हम सब देख पा रहे है ये एक जगह है जहाँ पे एक बोहोत सारी बाइकें रखी गई है साथ ही में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बोहोत ही शांत जगह और ये एक--